देखने को मिल रहा है ऊपर में मुझे लाइट देखने को --

मुझे यहां पे एक शोरूम देखने को मिल रहा है मुझे यहां पे बैटरी वाला स्कूटी देखने को मिल रहा है मुझे यहां पे--

पीछे में डेट देखने को मिल रहा है।

मुझे यहां पे एक जिम देखने को मिल रहा हैं। जिम मुझे यहां पर बहोत सारे--

प्लेन देखने को मिल रहा है प्लेन मुझे वाइट कलर का देखने को मिल रहा है मुझे प्लेन का --

इंजीनियरिंग वर्ष देखने को मिल रहा है सामने में मुझे --

मुझे यहाँ पे रोड देखने को मिल रहा है रोड पे मुझे बालू रखा हुआ देखने को मिल रहा है रोड के साइड में मुझे --

और मिठाई उठाई रखने वाला देखने को मिल रहा है जिसके अंदर --

मुझे यहाँ पे रोड देखने को मिल रहा है रोड के बदल में मुझे यहाँ पे --

ग्राउंड देखने को मिल रहा है ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे देखने को मिल रहे हैं पीछे में हमें --

वॉलीबॉल का ग्राउंड देखने को मिल रहा है सामने में हमे--

मुझे यहाँ पे सर्विस सेंटर देखने को मिल रहा है सामने में मुझे गारी देखने को मिल रहा है दारी सा रंग ताला है।

ऊपर बहुत सारे फलपुर देखने को मिल रहा है नीचे में हमें --

मुझे यहाँ पे रोड देखने को मिल रहा है रोड का उस तरफ मुझे --

घर देखने को मिल रहा है घर को क्रीम कलर से पेंट किया गया है घर के ऊपर मुझे ए_सी देखने क --

साइकिल देखने को मिल रहा है मुझे वहां पे मोटरसाइकल देखने को मिल रहा--

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखने को मिल रहा है मुझे उसते ऊपर फैन देखने को मिल रहा है मुझे वहाँ पे --

ये यहां पे दोतान देतने को मिल रहा है उसते बदल में मुझे नीचे में बहोत सारे पैंपर्स देखने को मिल रे हैं दोतान ऊपर मुझे--

भीड़ देखने को मिल रहा है दुकान के अंदर में लाइट देखने को--

साइड गोल्ड नाम था बैटरी को मिलरा ह --

पीछे में दीवाल देखने को मिल रहा है दीवाल का गुलाबी रंग से पेंट दिया ऊपर मिल रहा --

यहाँ पर मुझे बहुत सारे आदमी देखने को मिल रहे हैं उससे पीछे में मुझे एक घर देखने को मिल रहा है जिससे ऊप --

एल्वेस्टर देखने मिल रहा है पीछे में मुझे आसमान देखने को मिला रहा--

के बदल में मुझे पाइप देखने को मिल रहा है मुझे डेट देखने को मिल रहा है डेट क --

बहुत सारे धेरे हुए देखने को मिल रहे हैं उसके सामने में मुझे एक पेड़ देखने को मिल रहा है मुझे --

मुझे यहाँ पे एक कुर्सी देखने को मिल रहा है कुर्सी का रंग क्रीम कलर है कुर्सी के बगल में मुझे --

केबल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर मुझे बोतल रखा हुआ देखने को मिल रहा है सामने में मुझे --

मुझे यहाँ पे फर्श देखने को मिल रहा है फर्श के ऊपर मुझे बहुत सारे छांट देखने को मिल रहा --

साइड में मुझे एक बोतल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर मुझे पेट्रोल देखने को मिल रहा है।

सामने में मुझे एक दीवाल देखने को मिल रहा है जोकि टूटा हुआ है यहाँ पे मुझे एक मशीन देखने को मिल --